और ये ग्राउंड है काफी बड़ा ग्राउंड है कोई मैच का ग्राउंड है ये--

अ बिल्लियों का खाना भी हैं अ डॉग्स का भी है।

अह एक स्कूटर वाला दिख रहा है आगे में ही जो कि जा रहा है आगे की तरफ तो ये दो तीन बाइक वाले हैं।

एक बैग है जो कि लाल कलर का है उसी के बगल में एक टेंपू जा रहा है जो सफेद कलर का जो है।

सामने जो है तीन आदमी बैठे हुए हैं बेंच पर।

एक गाड़ी जो लास्ट में मैरून कलर की हैं वो जो आधे हिस्से मे फोटो में दिख रही है गाड़ी--

सामने ही एक ये जे_सी_बी है पीले कलर के।

काफी सारी चीजें है जोकि टेम्पू के अन्दर ट्रक के अन्दर जानी है और एक पर्ची--

ये एक अह दुकान है एक कोई मॉल का है मॉल की शॉप है।

सामने ही एक बाइक है आधी बाइक है फोटो में और सामने ही उसके एक बाइक वाला जा रहा है और पेड़ है।

कुर्ता है और गुलाबी कलर का कुर्ता है और ऊनी ऊनी कुर्ता भी है कपड़ा है

और काफी सारी लड़कियां हैं जोकि टेबल पे कला चित्र कर रही हैं।

उनके अं टेबल पर काफी सारी चीजें रखी हुई हैं कलर्स हैं सीज़र्स हैं कैंची है कागज है।